माचिस की तीलियों से घर बनाए हैं वा अन्य पत्तों से असली पेड़ बनाए हैं वा उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है वा मैदान में फोटो खिंचवा रही है उनके पीछे हमें एक बॉलीवुड नेट भी देख --

उनके पीछे अलग-अलग प्रकार के पौधों की गमले भी रखे हुए हैं दीवालों पर नीले लाल व सफ़ेद रंग से पैंट किया गया है वह कुछ बच्चे हमें कुछ-कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रात में अलग-अलग रंग के कागज है वह गोंद पेंसिल पेन कैंची अन्य चीज उपलब्ध है वह उनसे कुछ कुछ सामान बनाते हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक कतार में काफी सारे बच्चे बैठे हुए व कुछ-कुछ कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं।